और उसकी अ बाउंड्री के पास में अ ग्राउंड है अ जहाँ पर --

काली कलर की ये लाइटें भी जल रही है यहाँ पर और कुर्सियों पर लोग भी बैठे हुए हैं।

यहाँ एक कपड़े की अ दुकान है साहिबा मैचिंग कार्नर ।

और अ झोपड़ियाँ भी दिख रही है और लाइट के खम्भे भी नजर आ रहे है मकान दिखाई दे रहे है ।

और जो हॉल की दिवार है पीले कलर की हैं और बाहर लाइटें चमक रही --